ये दुकान है। इस दुकान का कलर येलो है।

और बहुत सारे लाल कलर का धागा निकला हुआ है।

इस रूम का गेट शीशे का है जिसमें से दो क्रिसमस का फोटो लगाया गया है।

और दीवाल का कलर थोड़ा ग्रे है।

हमें इधर में दिख रहा है शैंपू और सन ब्रीड अ केकें निमकी दालमोठ और पेपर रखा हुआ है।

टेबल पे बहुत सारे कॉपियां रखी हुई है और एक लैपटॉप चालू किया हुआ है।

ये एक होलसेलर है जिसमें से बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और सामने एक साईकिल लगा हुआ है।

यह एक पंडाल बना हुआ है येलो कलर का उसके बगल में लिखा हुआ है गाजीपुर जं--

और सामने में एक उम छोटा सा गाड़ी है फोर व्हीलर --

क्या कलर ब्लैक है।

अंदर में दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर के रूम ।

हर हर एक कंप्यूटर में दो लड़किये--

साइड में दो लड़के बैठे हुए हैं एक लड़के ने रेड कलर का टोपी पहना हुआ है।

और उसके पीछे में एक अं घर है। घर में अम् अम् बैनर लगाया हुआ है श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर ।

यह झरना टाइप का है जैसे पानी नीचे से ऊपर फेंक रहा है।

और गेट के बगल में दोनों साइड बैठने के लिए बेंच लगाया गया है।

दो चेयर दिख रहा है और एक ब्लैक कलर का चेयर है।

ये एक सैलून है जिसमें दो कुर्सियां लगी हुई है।

आंध्र बैंक ए_टी_एम उसके बगल में एक्सिस बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

लिखा हुआ है और इसका गेट शीशा का है शीशा में एक कागज चिपकाया हुआ है वाइट कलर का।